इस जगह ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है।

किसी प्रदर्शनी हॉल अथवा मेले का बाहरी दृश्य।

नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ़ जाने के लिए बना हुआपुल --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

नदी के बहाव के साथ मछुआरे अपनी नाव को खेते हुए --

मनोरम छटा का आनंद लेते हुए।

शहर के पेट्रोल पंप का दृश्य जहां --

शायद किसी कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है।

थोड़ा जड़ा हुआ थोड़े पत्ते दिखते हुए पीछे की तरफ मैं पहाड़ का नज़ारा भी आते हुए।

गुब्बारों से दिल बनाया हुआ है।

महद जी शिंदे के छत्री पूना --